ट्रक के अंदर समान लोड हुआ हुआ है। बहोत बड़े-बड़े विशाल-विशाल ट्रक लग रहे हैं।

ये आई थिंक गार्डन शॉप लग रही है जहां पर बहोत सारे पौधे मिलते हैं।

एक बहोत बड़ा सा एक मंच पर शादी हॉल लग रहा है यहां पर बहोत बड़ा सा एक फंक्शन हो रहा है और उसकी डेकोरेशन बहोत अच्छी हो रही है शादी के फंक्शन की--

यहाँ पर मेनली टायर्स मिलते हैं या अली में मेनली आई थिंक कार्स के टायर्स मिलते हैं। बड़े-बड़े --

और पीछे देखिए इसका जो एलिवेशन है ब्लू कलर की लाइटिंग हो रही है बहुत ही प्यारी एंड टेबल --

ये आई थिंक बहोत बड़ासा कोई स्टेशन लग रहा है मगर इस टाइम येई स्टेशन की आई थिंक सुबह का टाइम लग रहा है जिससे स्टेशन में कोई लोग नही बैठे हुएं हैं।

ये एक बहुत अच्छे से बहुत एंटीक से और बहुत डिफरेंट लुक के एक फ्लावर पॉट्स लग रहे है ये फ्लावर पॉट बहुत प्यारे और बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं ये फ्लावर पॉट्स अलग अलग कलर्स के अलग अलग--

और आई थिंग ये कार शोरूम लग रहा है क्योंकि इसके बिल्डिंग के बाहर एक कार खड़ी है।

और बहुत अच्छी बहुत बड़ा और विशाल की दो हॉस्पिटल लग रहा है।